एक पिक्चर लगाई गई है उसमें एक दुल्हा एक दुल्हन है और उसके पीछे बहुत सारे बैलून लगाए गए हैं और नीचे में जो--

और वहां पे बिजली की खंभे भी देखने को मिल रही है और वहां पे बहोत सारे घर है और घर के ऊपर एक टावर भी देखने को नजर आ रही है।

के पीछे एक पंडित जी है वो बैग खोलते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर बहुत सारी महिला खड़े एवं बैठी हुई है।

और वहां पर एक आदमी काम करते हुए नजर आ रहे है बगल में एक सीढ़ी देखने को मिल रही है और ऊपर में छोटी सी गेट है।

सामने में एक बहुत बड़ी मैदान देखने को मिल रही है और वहां पर एक हॉस्पिटल बना हुआ है उसे ब्राइट स्माइल डेंटल क्लिनिक लिखा हुआ है।

और वहां पर एक सेक्रेटरी खरा है वो की काली कलर की कपड़े पहनी है।

उसमें काली कलर एवं ब्लू कलर की कपड़े देखने को मिल रही है।

कार्टून में बांधी हुई ये उजली सी रस्सी है उसमें बहोत सारे कर्बस है और वहां पर एक बैठने वाली भी देखने को मिल रही है।

और टेबल पर बैठी हुई है और वहां पे कुछ पीले पीले पाइप देखने को मिल रहे हैं और गाड़ी ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं।

नीले भरे पेर पौधे हैं और वहां पर दो गमले देखने को मिल रहे हैं।

सामने में एक बहुत बड़ी हॉल है उस हॉल में एक मशीन है वो उजले एवं नीले कलर की है उस पे इप्सॉन लिखा है उसमें एक--

पे एक लड़का बैठा हुआ है वहां पे एक बच्ची एवं एक महिला है और गेट पे एक ब्लू कलर की गाड़ी लगी है और--